पेड़-पौधे दिख रहे हैं। एक जंगल है और एक सूरज दिख रहा है जोकि डूब रहा है और बादल जो है। वाइट आसमान वाइट दिख रहा है। पानी भी वाइट और एक सूरज चमक रहा है भगवे कलर --

जो एक किराना शॉप दिख रही है जो जिसका नाम गोयल डिमांड सेंटर है। यहाँ पे एक अन्कल है।

जोकि सामान बेच रहे हैं और यहाँ खाफी सारे अ सामान मुझे देखने है। यहाँ कुछ टॉफी कैंडी कुरकुरे बहुत कुछ सामान रखा हुआ है।

ये लेविस फ्लाइंग मशीन की कुछ यहाँ कपड़े मिलते हैं जोकि ब्रांडेड जाकी लेविस फ्लाइंग मशीन ऐसे कुछ कपड़े यहाँ पे ब्रांडेड मिलते हैं यहाँ पे ।

जहाँ पे एक बहोत बड़ी नदी मुझे दिखने को मिल रही है। और साईड में एक ब्रिज है जहाँ से ट्रेन जाती है।